मैदान के राइट साइड बहुत बड़ा मैदान दिख रहा जिसमे छोटे- छोटे हरी-हरी घास लगी हुई है।

पेड़ टाइप की लगी हुई नज़र आ रहे है यहाँ पे छोटे-छोटे घाँस लगे हुई भी नज़र आ रही है यहाँ पे सड़क भी दिखाई दे रहे है ।

और तालाब के सामने कुछ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है कुछ मकान दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में बड़ा-सा तालाब दिखाई दे रहा है तालाब में कुछ लोग नहाते हुए नज़र आ रहे है।

और यहाँ पे लाल मिट्टी टाइप दिखाई दे रही है।

बीच में एक रोड दिखाई दे रहा है रोड के साइड में भी मैदान दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ बच्चे खड़े हुए नज़र आ रहे है।

और यहाँ पे कुछ व्यक्ति चलते हुए नजर आ रहे है। यहाँ छोटे-छोटे घास लगे हुए नजर आ रही है। बड़े बड़े पेड़ लगे हुए नजर आ रहे है।

कपड़े के दुकाने दिखाई दे रही है यहाँ पे पोस्टर दिखाई दे रही है यहाँ पे गमले रखे हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में एक प्रचीन कॉल का अ की दिवार टाइप का दिखाई दे रहा है जिसमे पत्थरो की--

इस इमेज फूलो की दुकान दिखाई दे रही है जिसमे फूल सारे फूल दिखाई दे रहे है लम्बे-लम्बे मालाये दिखाई दे रहे है यहाँ पे एक व्यक्ति फूल बना--

यहाँ पे आईने दिखाई दे रहे है वे अपनी क्लीन सेव करते हुए दिखाई दे रहा है।